मे हमे किसी सड़क किनारे एक अ दृश्य दर्शाया गया है जहां हम देख सा पा रहे है की दो दो पहियों वाली गाड़ी रखी गई है जिसे आम तौर पर मोटरसाइकिल कहते है ।